दुकान के सामने एक स्कूटी भी पार्क किया हुआ है।

आगे दो बड़े कार्टून के बॉक्स भी दिख रहे है।

थोड़ी आगे में सफेद रंग के गाड़ी दिखाई दे रहा है।

सभी लोगों ने सफेद कपड़े पहने हुए हैं।

मौसम बिल्कुल साफ है और आसमान में थोड़े बादल है।

नीचे हल्का सा नदी भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक हॉस्पिटल के बिल्डिंग दिख रहा है।

लड़के के बाल में तीन क्लिप लगा रखे हैं।

ऑरेंज रंग के पौधे एक तरफ लाइन से लगे हुए है।

इस तस्वीर में सफेद रंग का मस्जिद का मीनार रात के समय दिख रहा है।

पीछे कि दीवार पे दो पोस्टर लगाया हुआ है।

इस तस्वीर में एक छोटा सा दुकान दिख रहा है जहां अलग अलग सामान रखा है।

इस तस्वीर में एक क्लासरूम दिख रहा है जहां स्टूडेंट पढ़ रहे हैं।

यहां अलग अलग चीज बिक रही हैं।

एक आदमी बैठा हुआ है।

बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ा साइन बोर्ड है जिसमें जिम का नाम लिखा हुआ है।

आसमान में कई सफेद बादल नजर आ रहे हैं लेकिन मौसम बहुत अच्छा है।

आगे एक घर भी दिख रहा है और मौसम काफी साफ है।

इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट का अंदर का नजारा दिख रहा है।

काफी लोग साथ में बैठे हुए दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक स्कूल गेट दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक छोटी सी स्पोर्ट की दुकान दिख रहा है।

नीचे क्रिकेट बैट्स और कुछ बैग्स भी नज़र आ रहे हैं।

मंदिर के सामने एक व्यक्ति खड़ा है।

एक चांदी का ग्लास और जग रखा है।

ई जगह एक इंडस्ट्रियल एरिया जैसे लग रही है।

एक हरे भरे पेड़ भी उस जगह पर है।